साथ ही सामने के तरफ तीन बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडरस रखे दिखाई दे रहे हैं।

यह किसी शादी समारोह में परोसे जाने वाले खाने पीने की व्यवस्था की जगह दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में किसी सुंदर समुद्र या नदी का नजारा दिखाई दे रहा है।

साथ ही सफेद रंग से बनी सुंदर बॉर्डर दिखाई दे रही है।

उसके अगल बगल दो व्यक्ति कुर्सी पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने एक टेबल रखी है जिस पे फूल का गुलदस्ता दिख रहा है।